जो की इसको फूलो से सजाया गया है।

यहाँ पर सब अपने अपने बोट में आदमी बैठे हुए हैं।

बच्चे व बूढ़े सब आए है का नाम हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार ग्यारह --

यहाँ पर एक तालाब है तालाब के किनारे एक सड़क दिख रहा है सड़क के उस पार एक जंगल है जंगल के ऊपर एक पहाड़ है।